एक येलो कलर की बनी हुई है और एक वाइट कलर की बनी हुई है एक वाइट और येलो बनी हुई है यहाँ पर एक आंटी लोग भी जा रहीं हैं घास लगी है पेड़ लगे हैं।

कलर की एक बिल्डिंग है जिसमें का खिड़कियां लगी है जाली लगी हुई है यहां पर यहाँ पर एक डॉ पंकज कुमार का बोर्ड लगा है।

बिल्डिंग बनी है ऊपर खिड़कि लगी हैं गेट लगे है जाली लगी है और ऊपर का इसका डिज़ाइन मीनार जैसा दिया है यहाँ माइक वग़ैरा भी लगी हैं यहाँ उसके आस पास पेड़ ही पेड़ हैं यह बोहत बड़ी है।

एक नदी दिखाई दे रही है और इसके सामने कुछ घास लगी हुई है रात का टाइम है इसके सूरज ढलने की जो वो रौशनी है वो नदी के पानी में भी दिखाई दे रही है और आस पास इसके घास है और एक पेड़ भी लगा है।

ये एक होटल की-- दुकान की-- होटल की कड़ाई के ऊपर एक ट्रे रखी हुई है जिसके अंदर जलेबिया रखी हुई है जोकि बहुत टेस्टी और स्वादिस्ट लग रही है।

उनके अंदर स्पून रखे हुए है और ये बहुत ही प्यारी स्वादिस्ट प्लेट लग रही है।